बहोत सारे चारों तरफ पहाड़ हैं और बहोत पेड़-पौधे लगे हैं। कहीं घास उग गई है। कहीं बंजर पौधे हैं और कहीं --

आसपास चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हैं। कुछ छोटे-छोटे पत्थर नीचे पड़े हुए हैं। सामने से एक व्यक्ति जा रहा है जिसने सफ़ेद कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

तस्वीर में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बहोत सारी कार्ड शीट कार्ड शीट पर बनी हुई है। बहोत ही प्यारी-प्यारी चीज़े बनी हुई हैं।

इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। यह बहोत सारी मछलिया रखी हुई दिखाई दे रही हैं। मछलियाँ लाल कलर के कुछ मछलियाँ काली और कुछ मछलीया --

आ ग्रे हैं आ एक टेबल रखी हैं जिसमें दो बोटले रखी हैं और कुछ तीन अंडे की ट्रे रखी हुई हैं।

सामने हमें तीन भैस दिखाई दे रही हैं जोकि नीचे चारा घास को खा रही हैं। चारों तरफ बहोत ही बड़े बड़े पेड़ पौदे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर कुल्हार --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

इस तस्वीर मैं हम देख सकते हैं की यहाँ पर बहोत सारी दुकाने दिखाई दे रहे हैं जोकि ठेलो पे लगी हैं कुछ दुकाने टेबल पर लगी हुई है कुछ कपड़ो की है और कुछ सब्जियों की और बहोत सारे --

इस तस्वीर मैं हम देख पा रहे हैं एक बच्चा हमें दिखाई दे रहा हैं जोकि स्टेज पे खड़ा हुआ हैं। स्टेज के पीछे --

जिसके सामने कुर्सियां रखी हुई हैं कुछ महिलाएं अपना मुँह बाँधे हुए है और सामने डी.पी.डी ओ.पी लिखा है।

यहाँ कारपेट जो बिछा है जिसका कलर लाल हैं एक व्यक्ति खड़ा हैं जिसने ग्रे कलर की जैकेट पहनी हैं दो व्यक्ति म्यूजिक सिस --